तस्वीर में मुझे बोहत सारी चिड़िया दाना खाती हुई दिखाई दे रहे है तथा इसमें मुझे बीच मे एक सरोवर दिखाई दे रहा है जिसमे पानी भरा हुआ है।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

इस चित्र में मुझे कुछ घरें दिखाई दे रही हैं तथा इन घरों में मुझे बहुत सारी खिड़कियां तथा दरवाजे दिखाई दे रहे हैं मुझे इसमें--

मुझे यह किसी मोबाइल शॉप की दुकान लग रही है इसमें मुझे आईडिया कंपनी की दुकान है इसमें मुझे एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है तथा पीले कलर का शटर दिखाई दे रहा है इसमें मुझे एक ऐ_सी दिखाई दे रहा है।

मुझे दिखाई दे रहा है कि यहा रेलगाड़ी का एक पुराना स्टॉक रखा हुआ है तथा यहा मुझे बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे।

तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां बहोत सारी जनसंख्या में लोग एकत्रित होकर यहां मुझे इस रंगमंच का कार्यक्रम कर रहे हैं| इसमें मुझे --